होटल दिखाई दे रहा है उस होटल का नाम होटल इंडिया --

मुझे इस इमेज में एक ठेला दिखाई--

इस इमेज में बहुत सारी औरतें दिखाई--

होती हैं तो साउंड की हैं।

मुझे इस इमेज में एक--

मुझे इस इमेज में एक दुकान दिखाई--

रखी हुई है मैगी भी रखी हुई है।